बिल्डिंग ऑल इंडिया रेलवे आकाशवाणी लखनऊ की है।

पहाड़ों पर हरे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक गेमिंग एरिया दिखाया गया है।

आमने की दो बसें हरे रंग की हैं।

इमारत के सामने एक रोड है।

कांच का सेल्व बना हुआ है।

मेजों पर क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है।

बाईं तरफ वाली बिल्डिंग पर एक बोड लगा हुआ है।

पोडियम के बगल में एक व्यक्ति भी खड़ा है।

इस फोटो में एक नदी का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की तरफ दो तार भी दिख रहे--

इस फोटो में एक मंदिर को दिखाया गया है।

मंदिर के ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई है।

मंदिर के आस पास ऊंचे-ऊंचे पेड़ भी दिख रहे हैं।

उजाला करने के लिए खम्भो पर लाइट भी लगी हुई है।

पीछे की तरफ शिवजी का त्रिशूल भी है।

धूप से बचने के लिए छत पर कपड़ा भी पड़ा हुआ है।

डायनिंग एरिया में कुर्सियां भी पड़ी है।

सामने की तरफ डस्टबिन रखा है।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

दुकान का नाम पाइरेट्स ऑफ ग्रिल है।

बाएं साइड में एक डस्टबिन रखा है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग के सामने का दृश्य दिखाया गया है।

डांस क्लास का नाम डांस नेशन है।

इस फोटो में एक गुरुद्वारे का चित्रण किया गया है।

गुरुद्वारे में नीचे की तरफ चटाई व दर्रा बिछा हुआ है।

आसमान में बादल भी छाए हुए हैं।

हेल्थ सेंटर के बोर्ड के बगल में एक ऐ_सी भी रखा हुआ है।

एक ए_टी_एम दिखाया गया है।

ए_टी_एम के सामने लोगों की लाइन लगी हुई है।

बैनर के नीचे कैफे कॉफी डे की दुकान है।

दुकान पर एक रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर पर खड़ा हुआ है।